बहुत जाड़ा देख रही छोटा छोटा जाड़ा है बड़ा बड़ा जाटा है ये फूल ग्रीन हो है गाड़न --

एक रेलवे टेशन है रेलवे टेशन से बाहर ट्रेन आ रहा--

बाहर है अन्दर जाने के लिए देख रही हूं हम सब जन को एक सेट हैं।

दृश्य एक बेड हैं बेड की कलर व्हाइट हैं।

बड़ा गाडी है एक बूट्स करियर बोल के ऐसा गाड़ी है ये--

एक शॉप देख रही है हम एक गोल्ड का शॉप

एक फैन देख रे है हम ये डेकोरेशन की ये शॉप --

एक कर्टेन एलो कलर कर्टेन और पिंक कलर कर्टन एक--

किसी को दे रह इधर नीचे प्लास्टिक कप देख रही है हम--

ग्रीन ग्रीन कलर डालने के और पर्पल कलर मिलने में डालने हैं।

ये नीचे कार्पेट डाले डालने के एक स्टेप एक ही स्टेप करें सब जन एक सिगनेचर स्टेप हैं।